एक आदमी कार पर डेंट डेंट पेंट कर रहा है ब्लैक कलर की कार है।

जिसके ऊपर डेंट पेंट कर रहा है बन्दा जो आदमी है उसने चेक कलर की शर्ट डाली हुई है। वो कार पर डेंटिंग और पेंटिंग कर रहा है।

एक ऑफिस बना हुआ है जिसमे एक कंप्यूटर व-कंप्यूटर सी.पी.यु. पड़ा हुआ है उसके बाहर एक शीशा लगा हुआ है।

कुछ प्रदर्शनी चल रही हैं जिसमे एक स्कूल में प्रदर्शनी चल रहे है जिसमे बहुत सारे बच्चे खड़े है| तीन मैडमे है जो उनको देख रही है| उनके पीछे गुब्बारे टंगे हुए है और कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पर |

एक आदमी निर्त्य की प्रस्तुति कर रहा है जिसने वाइट कलर की ड्रेस डाली हुई है।

यह एक सैलून है जिसमें कुर्सी रखी है और शीशे लगे हुए है और एक कंघी भी रखी हुई है एक ब्रुश रखा हुआ है। शीशे के बाहर एक आदमी फोटो खींच रहा है।

यहाँ बहुत सारे ऑटो रिक्शा खड़े हुए हैं। एक ग्राउंड पर औओओअ एक ब एक दीवार पर अरोड़ा प्रोविजन स्टोर भी लिखा हुआ है। बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। एक रेलगाड़ी का इंजन भी चल रहा है जो की खड़ा है।

इस में यह एक लग रहा है इसमें फुहारे भी रखा बुरस भी रखा हुआ है। रीलैक्स भी लगा हुआ है और कुछ गुब्बारे भी लगे हुए हैं जो अच्छे लग रहे हैं।